टेबल पे काफी सारा सामान रखा हुआ है ए ऐसे क्यू_आर कोड रखा हुआ है एक फ्लावर पॉट है और --

एक आदमी खड़ा हुए है काफी हरे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं अ और फर्श गीला --

है गले में हार है गले में हार है हाथ में चूड़ी पहन रखी है उसने --

ए_सी लग रही है लाइट भी है और एक बोतल लगी हुई --

यहाँ एक आदमी है जो टेबल के ऊपर अ कपड़े प्रेस कर रहा है।

कबोड में कुछ सामान रखा हुआ है एक आगे दोनों साइडों में दो आदमी बैठे हुए --

यहाँ पर तीन आदमी खड़े हुए हैं एक ने अपने हाथ में वाइट कलर --

एै और उस उसके चारों तरफ मट्टी मट्टी है हरी हरी घास भी है।

पेड़ पौधे भी हैं और मैदान में मिट्टी और रखी अच्छी --

और उस अअअ लैपटॉप भी सबके आगे रखे हुए कुछ लोग भी बैठे हुए --

ये एक रोड है रोड पर एक जीओ का बोर्ड लगा हुआ है और कुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं।

स्प्रे की बोतल रखी हुई है एक आदमी के चेयर पर बैठा हुआ है जिसने --

कुछ लोग बच्चे नहा रहे हैं और यहाँ पास लाइट --

अ दो आदमी हैं आदमी और इसके नदी के किनारे काफी सारी बोटे रखी हुई है एक पुल है अ पुल है।

बैंक है और यहाँ पर एक भी है उसपे साइकिल वाला एक साइकिल वाला साइकिल पे जा रहा है।

ए लिखा हुआ है कुछ पर्चे लगे हुए हैं कुछ टेबल और डेक्स सब पड़ी हुई है।

और स्विमिंग पूल में एक यहां पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है यहां।

कुछ आदमी है आदमी लोग हैं यहां गिटार और सितार दोनों रखे हुए हैं।

पाइप को लेकर छड़काव कर रहा है यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी हैं।